यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ योगा कर रही है ओर यहाँ पर एक हेड कोच है जो सबको ट्रेंड कर रहे हैं ।

जो बोहोत ही खूबसूरत तरहा से सजाया गया हे । ओर यहा पर बोहोत तरहा की लाइटे लगी हुई है। जो देखने मे बोहोत ही खूबसूरत लग रही है।

यहां बहुत सारे लोग ढोलक बजाते हुए जा रहे हैं| सभी के सर पे कुछ अजीब तरह का सामान लगा हुआ है।

इस तस्वीर मे हम देख रहे है के एक लड़का हे जोकि पॉप गंजी पेहने हुआ है।

जैसा की हम देख पा रहे है की यहाँ सब्जी का दुकान है और फल भी बेचे जा रहे है जहां पर प्याज आलू--

यहा पर एक बल्ले बाज हे ओर एक गेंदबाज हे । एसा लगता हे की ये प्रेक्टिस कर रहा हे ।

ये एक शाम सुपर मार्केट है।